लगी हुए मेले की है जहां पर रिक्शा ऑटो रिक्शा बेचे जा रहे हैं।

जोकि किसी मंदिर की है यहां पर बहोत सारे लोग --

ये लोग इनका गाना सुन रहे है और बहोत ही तारीफ --

इसके पास में प्ले स्टूडियो भी है।

मशीन और बहुत सारे आइटम्स दिखाई दे रहे हैं फ्रिज कूलर --

फोटो एक कूलर की शोरूम की है जिसमें कुलर भी है।

और यहां पर शादियों में भी बहुत अच्छा मेकअप किया जाता है।

लोग पूल के नीचे से गाड़िया निकाल रहे है।

यह फोटो एक कॉस्मेटिक और अन्य चीजों की है।

जिसमें खड़े होकर ये वेट कर सकते हैं जो --

यह दुकान के_एम रोड पर स्थित है और--